उस पर एक पुलिस अधीक्षक का बोर्ड लगा हुआ हैं।

यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की ग्रे कलर की है।

यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेडियम दिखाई दे रहा है। स्टेडियम के बाहर सड़क भी दिखाई दे रही है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। आसपास छोटी-छोटी --

जो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी हुई है।

सभी लोग हात जोड़कर खड़े हुए दिखाई दे रहे है सभी लोग किनारे पर खड़े है वह-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

यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है सड़क के पास ही में एक बडी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है उसने खिड़किया लगी हुवी है तीन बस खड़ी हुवी दिखाई दे रही है जिनका रंग पीला है।

यहाँ पर एक सब्जी मार्केट दिखाई दे रहा है। सब्जी मार्केट में गोबी टमाटर मिर्ची आलू सभी दिखाई दे रहे है। टोकरिया रखी हुवी है। टोकरियो में बहोत सारी सब्जी नजर आ रही है।

उपर पन्नी बंधी है। वा दिखाई दे रही है डंडा भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बडा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में खिसकपट्टी लगी हुवी है जो कि लाल कलर की है उसके लोहे के डंडे लगे हुए है जो कि पीले कलर के है। एक लड़की फिसलती हुई दिखाई दे रही है।

उसने हरे कलर के कपडे पहने हुवे हैं लाल कलर का पायजामा पहना हुवा है। एक पाइप दिखाई दे रहा है जो कि ग्राउंड में पड़ा हुवा है। ग्राउंड घास दिखाई दे रही है। मि --

सबसे हाथ पीछे किये हुए है। सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए है। उसके बिल्डिंग का खिड़की दिखाई दे रही है। एक लाल रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है। जिस --

आगे दो स्वेटर दिखाई दे रहे है। जिनका कलर लाल है। नीचे कुछ स्कर्ट टंगी हुई है जोकि एंगेल पर टंगी हुई है।

बिल्डिंग में खिड़किया बनी हुई हैं जोकि छोटी-छोटी दिखाई दे रही हैं बाहर गिट्टी पड़ी हुई है कचरा पड़ा हुआ है ईटों के टुकड़े पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक सफ़ेद रंग का दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसपे लाल अक्षरों से अमरोहा वाटर पार्क लिखा हुआ है। अमरोहा वाटर पार्क लिखा हुआ है। बाहर अंदर जाने के लिए रास्ता दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है। स्टेज पे कुछ लड़कियां दिखाई दे रही हैं। लड़कियाें ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। वह डांस कर रही हैं। ऊपर बलून दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑरेंज कलर के हैं।

के उपर नीले रंग की कांच लगा हुआ है। एक लड़का दिखाई दे रहा है जोकि कसरत कर रहा है उसने अपने हाथ एंगल पर पकडे हुए है पास ही में एक मशीन और र --

की पर दो आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं तथा सामने दो कुर्सियाँ खाली दिखाई दे रहे हैं। शटर का कलर पर्पल है। बाहर बलून दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे और सफ़ेद हैं।

यहाँ पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में घास दिखाई दे रही है दो लड़के खुदाई करते हुए दिखाई दे रहे है जिन्होंने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी है उनके हाथ में फावड़ा दिखाई दे रहा है।

सभी लड़को ने बेग टांगा हुआ है। एक छत्री दिखाई दे रही है जो कि पिंक कलर की है उसमे सफ़ेद रंग भी दिखाई दे रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में डंडा है और दो लड़के गड्डा खोद रहे हैं।

यहाँ पर एक बड़ी सी लोहे की जाली लगी हुई दिखाई दे रही है। लोहे के जाली के पीछे कुछ हिरन दिखाई दे रहे हैं जो की जंगल में घास खाते हुये दिखाई दे रहे हैं। आसपास --

पास में फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं फूलों के उपर लाइट लगी है एक लकड़ी का पटिया पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के बाहर एक लोहे का डंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है पास ही में बोर्ड लगा है जिसपर --

यहाँ पर एक बड़ा सा झांकी बना हुआ दिखाई दे रहा है उसमे अंबे माता की मुर्तियां दिखाई दे रही हैं। मुर्तियां काफी सारी दिखाई दे रही हैं सभी मूर्तियों ने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं तथा लाल बॉर्डर है।